यह घूमने आये हैं। पहाड़ी एरिया में पहाड़ी छेत्र में घूमने आये हैं।

यहाँ पे हमें दुकान दिखाई दे रही है। एक किराने की दुकान है। बाहर की तरफ यहाँ पे बोरियों पे सामान रखा हुआ खड्डे पे सामान रखा हुआ --

यहाँ पे एक सुनसान रोड दिखाई दे रही है दोपहेर के टाइम का सीन नजर आ रहा है सबके दरवाजे बंद है रोड सुनसान है कोई भी व्यक्ति यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है।

यहाँ पे एक इमेज दिखाई दे रही है। यहाँ पे कांच लगा हुआ है। शोकेस जैसी इमेज दिखाई दे रही है। अंदर पे सामान रखा हुआ है यहाँ पे। शोकेस में --

शोकेस में ताला लगा हुआ है। दोनों तरफ ताला लगा हुआ है। लकड़ी का शोकेस है। कांच लगा हुआ शोकेस बहोत ही अच्छा दिखाई दे रहा है।

यहाँ पे बड़े-बड़े पर्सन लोग भी आये हुए हैंछोटे-छोटे भी आये हुए हैंउनके फादर्स भी आये हुए हैं।

बहोत ही मस्ती कर रहे पानी एकदम ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है सभी लोग यहाँ पे फन कर रहे हैं नहा रहे हैं।

पर एंजॉय करते फन करते हुए छोटे छोटे बच्चे दिखाई दे रहे हैं। पानी में नहा रहे हैं। पानी ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। एकदम ब्लू - ब्लू दिखाई दे रहा है। सब कुछ यहाँ --

यहाँ वहाँ जाने वाले राहगीर खड़े हुए हैं। पीछे की तरफ बिल्डिंग बनी हुई है। प्रचार के लिए बाह --

बहोत बड़ा एक पोस्टर भी लगा हुआ है। मोदी जी बने हुए हैंयोगी जी बने हुए हैं उसपे यात्रीगण यहाँ खड़े हुए हैं पीछे की तरफ बहोत सारी बिल्डिंग भी दिखाई दे मैदान एकदम साफ़ दिखाई दे रहा है।

इसका अभी-अभी इनॉग्रेशन हुआ हुआ है तो बलून भी यहां पर लगे हुए हैं। न्यू न्यू ओपनिंग हुई --

ये एक पिक्चर दिखाई दे रही है सब्जी मार्केट की पिक्चर है यहाँ पे बहुत सारी सब्जियां की शॉप लगी हुई है।

एंड दूर-दूर शॉप लगी हुई है बकायदा एंड शॉप अभी लग रही है यहाँ पे ज्यादा भीड़ नहीं दिखाई दे रही है। कुछ-कुछ पर्सन ही आए हुए हैं सब्जी लेने के लिए।